बहोत कागज-उगज रखा हुआ है।

और खिड़की डिज़ाइन डिज़ाइन का है। नीला कलर का ऊपर चा आसमान है। अगल-बगल में पेड़-पौधा है।

साइकिल से स्कूल भी है इसमें आदमी पढ़ने के लिए जाते है एक मकान भी है मकान के पीछे एक पेड़ भी है|